और यहां पर एक पानी का कैंपर भी दिख रहा होगा और आप दे सकते हैं क्योंकि यहां पर बेग ही बेग की दुकानें हैं और आप जल्दी से जल्दी आएं और विजिट करें।

जैसे कि आप देख सकते है यहां पर एक लक्ष्मी लाइब्रेरी का फोटो दिख रहा होगा और यहां पर काफी सारे वाहन खड़े हुए हैं।

और यहां पर चांदी के बर्तन दिख रहे होंगे यह एक चांदी का घर है और एक सोनार का भी--

और यहां पर कई लोग अंदर जा रहे हैं कई बाहर आ रहे हैं और एक आदमी खाने के सामान भी बेच रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं।

दिख रही होगी और नए बलूंस भी दिख रहे होंगे तो आप लोग से निवेदन है कि इस दुकान पर जल्दी से जल्द जाए और नए नए कंप्यूटर का शुभारंभ करें।

हैलो दोस्तो यहां पर एक मकान का काम चल रहा हैं। यहां पर काफी सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

और यहां पर काफी सारे लोग आगे की ओर जा रहे हैं यहां पर हरियाली पेड़ पौधे दिख रहे होंगे।

हेलो गाइज सब कोई है मकान दिख रहा होगा यह बीकानेर रेलवे स्टेशन का डाक सेवा है।

यहां पर काफी सारी गाड़िया खड़ी हुई है तो आपसे निवेदन है कि आपकी मर्जी के जा सकते है।

और आपको यहां पर काफी सारे लाइट बोर्ड दिख रहे होंगे और खिड़कियां दिख रही होंगी यहां पर एक घड़ी लगी हुई है दो तीन फैन लगे हुएं हैं।

जैसे की आप देख सकते है यहां पर एक होटल का रूम है और यहां पर कुर्सियां है कुर्सियां रखी हुई है और पर्दे हीं पर्दे दिख रहे होंगे --

आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस होटल में आकर विजिट करें और यहां का आनंद उठाएं।

श्री बालाजी होटल भी दिख रही है की यह होटल --